यहां पे बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं एक रेड कलर के और एक ब्लू कलर की बाइक भी हैऔर उस---

पिंक कलर के फूल लगे हुए हैऔर यहां पे ब्लैक कलर की जलियां लगी है और ये बहुत बड़ा घर है यहां पे बहुत बड़ा दरवाजे है खिड़कियां है।

व्हाइट कलर के क्रीम और रेड कलर के डब्बे वाले क्रीम भी रखे हुए है और यहाँ पे पिंक कलर से पूता हुआ है ये पार्लर है।

ज़मीन पर बिछी हुई है और दीवार पे बहुत सी लाइटे लगी हुई हैं और घर के बाहर --

और ग ग्राउंड के आस-पास बहुत सी मल्टीयें बनी हुई हैं कच्चे मकान भी बने हुए हैं वाइट कलर का मकान भी दिख रहा हैं और यहाँ से आसमान भी दिख रहा हैं और बहुत से घर भी दिख रहे --

यह एक पार्क है पार्क मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और वे ए और रेड कलर के एक शेड वाला एक छोटा सा घर भी बना हुआ है।

ये एक जिम हैं। जिम बहुत बड़ा है। जिम में बहुत सी मशीने रखी हुई हैं। रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है जिम की दीवार पे एक-एक एक फोटो लगा हुआ है। एक बॉडी बिल्डर का फोटो लगा हुआ है यहाँ |

रेड कलर का एक यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे बोहोत से बलून लटक रहे है ग्रीन कलर के पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के बलून लटक रहे--

और यहाँ ग्रीन कलर की घास भी है और व्हाइट कलर का आसमान भी नजर आ रहा है और यहाँ से तार भी नजर आ रहे--